और नीले रंग के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं।

यह एक नई साइकिल है जो दुकानों में बेचने कै लिए तैयार की गई है।

यह तस्वीर एक कॉलेज या संस्थान की लगती है जिसमें छात्र और छात्राएं प्रवेश कर रहे हैं।

यह तस्वीर एक भव्य समारोह के प्रवेश द्वार की है।

पुरुष और महिलाएं खुले स्थान में हरे रंग की चटाई पर बैठकर किसी पर प्रवचन या चर्चा को सुन रहे हैं।

जिससे यह किसी आध्यात्मिक आयोजन का प्रतीक होता है।

जिससे यह जगह दोस्तों या कपल्स के लिए परफेक्ट लग रही है।

यहां हरी भरी प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण रास्ता है।

यह एक सुंदर हरा भरा पार्क है जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और घास से घिरी पगडंडी दिखाई दे रही है।

बिल्कुल ही शांत माहौल है।

उनके हाव भाव और मुद्राएं नृत्य की सुंदरता को दर्शा रही है।

ऐसे स्टेशनों पर यात्रा करना सुरक्षित हो सकता है।

एक व्यक्ति ने सफेद शर्ट पहनी हुई है और दूसरा क्रीम रंग की शर्ट में है।

आसपास रंग बिरंगे फूल इस स्थान को और खूबसूरत बना रहे हैं।

दूर पहाड़िया और नावें इस दृश्य को और मनमोहक बना रही है।

जहां टूटी हुई दीवारें और गुम हो चुकी छत इसके सुनहरे अतीत की कहानी बयां कर रही है।

धूल भरी जमीन और आसपास खड़े लोग इस ऐतिहासिक स्थल के रहस्य को जानने के इच्छुक प्रतीक हो रहे हैं।

जहां पर आरामदायक कुर्सियां और अच्छी तरह से सजी हुई टेबल दिखाई दे रही हैं।

घने हरे पेड़ों के बीच गहरी दरारें बनी हुई है।

यह दृश्य एक सकारात्मक और उत्सवत्मक माहौल का अनुभव देता है।